इसकी सीट के नीचे दो टप पड़े हैं जो ग्रीन कलर के हैं। --

कई टूल्स भी हैं पूरा डेंटल क्लीनिक .--

और बास्केट रखी हुई है जिसमें बहुत सारे--

साइड में एक चेयर रखी हुई है।

सामने व्हाइट कलर की बिल्डिंग है साइड में ब्राउन कलर की बिल्डिंग है ऊपर से शायद एक पुल जा रहा है और आसमान दिखाई दे रहा है।

टी शर्ट पहनी हुई है एक ने शर्ट पहनी हुई है।

वहाँ पर बो रैक में बहुत सारी बुक्स रखी हुई है।

एक महिला बस की ओर आ रही है जिसने पर्पल कलर का शॉल पहन रखा है।

अ उसने ब्लैक कलर की जैकेट और काले रंग की पेंट पहनी हुई है।

सामने जो आदमी खड़ा है जि उसने पिंक कलर की शर्ट काली पैंट और ग्रे कलर की टोपी पहनी हुई है एक आदमी बनियान में खड़ा है।

जिसमें लाल नीले और हरे पीले रंग के हेयरबैंड नुमा --

नीचे पर्पल कलर का कारपेट टाइप कुछ है।

और साथ में एक टेबिल भी पड़ी है जिस पर कुछ जरूरी कागजात वगैरह पड़े हैं फर्श का रंग सफेद है।

यह ए हॉल में लाल पिले गुबारे लगे हुए हैं।

सामने कुछ कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं ये एक कंप्यूटर सेंटर टाइप दिखाई देता है।

जिसमें पीली हरी नीली टेबल पर कई कंप्यूटर पड़े हुए हैं।

सामने रैक में बहुत सी टो बास्केट पड़ी हैं।

यह एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें मल्टीपल सामान मिलता है।

साइड में एक आदमी खड़ा हैं इसका फर्श ग्रे कलर का है।

सामने एक वाइट कलर का दरवाजा दिखाई दे रहा है इसकी छत पर बहुत सी लाइट है पीली और सलेटी रंग की इसकी छत है।

एक ऑटो रिक्शा का रंग ग्रे कलर का है तो दूसरे का सफेद है।

जवान सब इसमें एन्जॉय कर रहे हैं।

जोकि अ उनमें आदमी भी है।

कुछ देख रहे हैं कुछ खरीद रहे हैं।

आगे एक महिला सफेद रंग की ड्रेस में बुक्स खरीद रही है।

ऊपर दो फ़ानुश है और दो हैंगिंग लटकाए गए हैं।

बाहर चेयर और एक टेबिल है टेबिल के ऊपर--

साथ में एक वॉशवेसन है वॉशवेसन के ऊपर मिरर लगा हुआ है।

यह एक हॉस्पिटल का कॉरिडोर है।

एक अलमारी रेड कलर की है और एक पीच से कलर की है।

ऊपर ग्रे कलर की कुछ और भी अलमारी बनी हुई है।

ऊपर कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं।

यह एक साइकिलों का शोरूम है जिसमें बच्चों की और बड़ों की साइकिल रखी हुई है।

जिसमें सामने से कॉरिडोर जा रहा है जिसमें एक दरवाजा साइड में एक खिड़की--

साइड में ईंटों का ढेर लगाया है सामने बाइक खड़ी है।

और साथ में एक दरवाजा है जिस पर दो पर्दे टांगे गए हैं।

साथ में एक छोटा सा किचन है जिसमें एक बोटल रखी गई है।

यह एक गोदाम सा लगता है इसमें दो पेटियाँ सामने खाकी रंग की नीले रंग की --

यह एक मंच है जिस पर एक नृत्यांगना नाच कर रही है।

यह एक हरा भरा मैदान है इसमें बहुत सी हरियाली वाले पेड़ है।

सामने रेत का ढेर दिखाई दे रहा है और उसके पीछे कुछ पहाड़ से दिखाई दे रहे हैं।